इस php ट्यूटोरियल में हम कम्पेरिज़न तुलनात्मक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे
कम्पेरिज़न आपरेटर्स 2 मानों 2 स्ट्रिंग्स या 2 वेरिएबल्स जो इनमें से किसी को सम्मिलित करता हो उनकी तुलना कर सकते हैं तथा उस पर कार्य करेंगे
इसके लिए मैं if statement का प्रयोग करने जा रहा हूँ
चलिए if statement संरचना का निर्माण करते हुए शुरू करते हैं
मेरी शर्त है यदि 1==1
echo
true
और फिर else
echo
false याद रखें मुझे इन कोष्टकों की आवश्यकता नहीं है अतः मैं इन्हें हटाने जा रहा हूँ
चलिए इसे जगह छोड़ कर लिखते हैं
कभी जगह छोड़ कर लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए
यह पहला कम्पेरिज़न ऑपरेटर है
2=to मतलब कम्पेरिज़न ऑपरेटर हम यह if statement में पहले देख चुके हैं
1 equals to 1 अतः यह true echo करेगा चलिए जाँचें
हमें true मिला
चलिए मैं इसे बदलता हूँ if 1 > 1 तब देखते हैं कि हमें क्या उत्तर मिलता है
false क्योंकि 1 1 के बराबर है 1 से बड़ा नहीं
चलिए अब इसे बदलते हैं 1 >= 1
if 1 >= 1 echo true else echo false
यहाँ हमें true मिलना चाहिए
आप इसी तरह से less than छोटा या equal to बराबर के साथ भी कर सकते हैं अतः उदहारणस्वरूप less than
false होगा less than छोटा या equal to बराबर के लिए true होगा
हम not equal to असमान भी कह सकते हैं अतः if 1 is not equal to1 echo true
रिफ्रेश करें हमें यहाँ false मिलेगा क्योंकि 1 बराबर है 1 के चलिए अब कहते हैं if 1 is not equal to 2
हमें true मिला क्योंकि 1 2 के असमान है
यह बुनियादी कम्पेरिज़न आपरेटर्स हैं जिन्हें आप हमारे ट्यूटोरियल के लिए प्रयोग करेंगे
इस पर विस्तार करें इनका अभ्यास करें और आप इनको बेहतर समझेंगे
आप इन ऑपरेटर्स का उपयोग करके वेरिएबल्स की भी तुलना कर सकते हैं अतः उदहारण के लिए num1=1
num2=2 अब हम क्या करें कि इन वेल्यू्स को बदल दें और हम करते हैं
यह बिलकुल वही उत्तर प्रदर्शित करेगा जैसा कि हमें पहले मिला था जो कि true है अब हमें यह करना है कि इन वेल्यूस को बदलना हैं
कृपया ध्यान दें यह अब ऐसे पढ़ेगा num1 = 1 num2 = 1 अतः यदि num1 1 के बराबर नहीं है तो यह ग़लत है क्योंकि 1 1 के बराबर है इसलिए हमें false मिलता है
यह सरल कम्पेरिज़न आपरेटर्स हैं इनका अभ्यास करें
आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद